ग्रीन कलर के पेड़ें दिख रहे हैं झंडियाँ लगी हुई दिख रही हैं मकान दिख रहे हैं कच्च --

है कलर का बादल में पिंक कलर दिख रहा है व्हाइट कलर दिख रहा है नीला कलर दिख रहा है जामुनी कलर दिख --

में निचे भी पड़ी हुई दिख रही पीले कलर की व्हाइट कलर की दो-तीन जेंट्स दिख रहे एक ऑटो में चढ़ा हुआ दिख रहा एक व्हाइट कलर की --

कलर पूता हुआ दिख रहा है ग्रीन कलर दिख रहा है क्रीम कलर ब्लैक आसमानी व्हाइट कलर कृ नाम लिखा हुआ दिख रहा है लाइटें लगी दिख रही हैं।